यहाँ एक दुकान है दुकान बड़ा जैसा महल है उसमे दुकान दिया गया है कुछ पपीते पैक कर के रखा है वहाँ और यहाँ पोस्टर छपा हुआ है।

बहोत साफ़ पानी साफ़ पानी है| जा रहा है| आदमी पानी बह रहा है बह रही है --

यहाँ एक चिड़िया घर है और चारो तरफ घेरा हुआ है और बत्तख रखा गया है। बहुत बड़ा-बड़ा सादा-सादा बत्तख है।

एक टेम्पू गाड़ी है। उसमे कुछ आदमी है और कार है। उनको है। दो चक्का भी है और यहाँ पे बड़ा सा पोल खुठा भी है। उसके ऊपर लाइट भी है।